और वहां पर व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर जमीन कुछ है जो घेरे हुए नजर आ रहे हैं।